यह मुझे बहोत ही अच्छी लगती है।

टिक्की बेचते हैं यह बहोत ही अच्छा नजारा है।

यह बहोत ही सुंदर लग रहा है।

किसके बहार एक कॉलेज लग रहा है।

यहा सी_सी_टी_वी कैमरे मिलते हैं उसकी दुकान लग रहीं हैं।

पेड़ पौधे हरियाली ही हरियाली है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं।

स्कूटी ड्राइवर दिखाई दे रहे हैं रोड के आसपास पेड़ पौधे हरियाली छाई हुई है।

पेड़ हरा भरा है जिसकी छांव बहोत सुंदर है।

ये एक जिम की फोटो है।

भार कर रहे हैं और क्रिती योगा कर रहे हैं।

मेज भी है पार्क के पास यहां आराम से कोई भी बैठ सकता है।

ये पता नहीं कहां है लेकिन बहुत ही सुंदर हैं।

घर या कुछ और लग रहा है।

मुझे तो घर ही लग रहा रहा है इसके पास एक हरि भरी बेल भी है।

यह कोई दुकान जैसा भी लग रहा है बहुत ही--